अऊ आदमी मन मज़ा लेते क्रिकेट के बईथे बईथे--

एहा मैदान ए मैदान में खेले आए हे लईका मन अऊ मस्त साम के टाइम हे बादल दिखत हे अऊ पहाड़ भी दिखत हे अऊ सूर्य ह डूबने वाला हे ।